यहाँ पर काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग नंगे पैर खड़े हैं।

यहाँ पर काफी सारे पेंस और काफी सारी पेन्सिल वगैरह रबर वगैरह बाकी सारी चीजें है। यहाँ पर हमें एक स्टेशनरी दुकान दिखाई दे रही है।